इस गाड़ी का कलर ग्रे है।

यहां पर तरह तरह के बैलून लगाए गए हैं।

यह किसी मंदिर का दृश्य है।

एक स्कूटी दिखाई पड़ रही है।

यहां पर रेड कलर का हार्ट भी है।

अंदर की जगह है यह अभी--

छोटे तथा बड़े खेल रहे हैं।

रेस्टोरेंट है यह बहुत सुंदर है।

इस रेस्टोरेंट का नाम गिक तोपिया है।

यह किसी मंच की तस्वीर है।

है यहां अभी घास नहीं उगी है।

है तथा फूल भी खिले हुए--

है यहां टमाटर गोभी बैंगन--

पर यूको बैंक लिखा गया है यहां ईंटे भी लगी--